इसमें पीले कलर की हैऔर इसमें--

आईना दिखाया जा रहा हैऔर--

और काफी अच्छा यह छत्री है।

कई महिलाएं दिख रही है कुछ--

बहुत सारी लड़कियां नृत्य कर रही है जिसे हम भ्रतनाट्यम--

जंगल काफी साफ हैऔर--

जंगल के बीचों बीच एक--

जो कि देखने में काफी सैटिस्फाइंग लग रही है।

कॉफी लिखी हुई दिखाई दे रही है कैफे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इसमें थ्री वी डांस एरा लिखा हुआ दिख रहा है।

कैम्पस लिखा हुआ दिख रहा है।

ढेर सारी लोग चल रहे हैं।

इस तस्वीर में हमने देखा कि--

जहां ढेर सारी मूर्तियां बनाई गई है।

शिव जी वैगेरा की है सारे भगवान की मूर्तियाँ हैं और इसमें --

का दिखाया गया है जहां एक व्यक्ति जिम कर रहा है।

सिरवाने की दुकान दिखाई गई हैजहां--

यह एक बैचलर का घर है।

सामान बिखरी हुई हमें दिखाई दे रही है।

यह देखने में काफी सैटिस्फाइंग लग रहा है।

और काफी छोटे-छोटे --

में एक मछली दुकान दिख रही है जहां--

इस कश्मीर में एक व्यक्ति--

खड़े होके ये वीडियो लिया हैऔर--

टेंपो पीलेे कलर की है।

इस तस्वीर में हमें एक--

और बहुत तरह की डायरी है।

और विक्रेता खुद्रा विक्रेता लिखा हुआ दिख रहा है।